कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और आगे जा कर कुछ जगह-जगह कमरे बने हुए हैं बहुत सुंदर।

यहां पर सोफे रखे हुए हैंलाल कलर से बनाए गए सोफे है और पीछे भी कुछ सोफे कुर्सियां रखे हुए है।

इस इमेज खाफी लम्बा कुछ चेर कुछ रखी हुयी है पीछे और काला-काला दिखाय दे--